यह आप देख सकते हैं कि यह किराने की एक दुकान है।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

ये मतलब देखने में अच्छी लग रही है।

ये एक रेस्टोंन हैं बहोत अच्छा दिख रहा है लाइट लगी हुई है।

जेंसों की शेरवानी की दुकान है कॉट पेंट की दुकान है।

बड़ी सी नदी टाइप की है और इसमें जहाँ--

बहुत सी तरीके की मशीन रखी हुई हैं।

आप देख सकते हैं ये एक पेट्रोल पंप है।

इधर पर बहुत सी गाड़ियां आती हैं पेंट्रोल भराता है।

यह एक विविध कला विकास समिति है।

शायद अभी अभी न्यू बन रही है कुछ--

और कुछ लाइटें चमक रही हैं गाड़ियां जा आ रही हैं।

अच्छी मस्जिद दिखाई दे रही है लंबी मस्जिद है बहुत--